और बहुत सारे सजावटी पौधे यहाँ पे उगे--

और साईड में जो है । ग्रिल पर फूलो की बोहत सारी माला रखी हुई हें ।

यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग जो हैअअअ रास्ता पे खरे हैं।

यह एक मैदान हैं मैदान में कुछ लोग खेल रहे हैं।

ये एक गार्डन है। गार्डन मे रंग बिरंगा फूल लगा हुआ है।

अ जो ब्राउन कलर का पहार है उसके बगल में पेड़ पौधे है और उसके निचे मैदान है। जो अ सुखी हुई मैदान है। यहा सुखी सुखी--